एक आगे डाइस पर कुछ बोल रहे है उनके पीछे चर्च का है।

मंदिर पर फोटो रखी-- बाहर बैठ कर कुछ लोग प्रार्थना कर रहे है।

एक बसेस काप का फोटो है इसमें कुछ यात्री बाहर बस का वेट कर रहे है कुछ बसे खड़ी हुई है साइड में बिल्डिंग है कंडक्टर भी है।

बीच मे एक फव्वारा है कुछ बच्चे बड़े सब लोग खेल रहे है काफी अच्छी लाइटिंग हुई है बिल्डिंग्स पर--

यह मंदिर है यहाँ पे भगवान के और फ़ोटोज़ रखे हुए हैं यहाँ एक पण्डितजी पूजा कर रहे हैं काफी अच्छा माहौल है यहाँ पे एक पूजा का सामान रखा हुआ है।